मूर्ती हमें एक गौतम बुद्ध की है जहाँ पर गौतम बुद्ध अपने हाथों को उपर कर कर खड़ा है।

यह कम्पुटर सेंटर है। जहां पर बच्चे कम्पुटर सीखने के लिए आते हैं।

सकूल के पास का एरिया है। यहाँ पर साइड मे पार्किंग बनाई हुई है।

और पास में एक पेड़ है पेड़ बहुत बड़ा है।